यह एक कपड़े के मॉल का चित्र है।

सामने में ब्लैक रंग का चेयर भी है।

सामने में एक बड़ा सा पेड़ भी है।

सामने में लीची वाल भी लगा हुआ है।

पीछे में बहुत बड़ा पहाड़ भी है।

टेबल पे कुछ पानी का बोतल भी है।

तालाब में बहुत सारा पानी है।

यह एक नदी का चित्र है नदी में बहुत सारा पानी है।

पीछे में बहुत बड़ा पहाड़ भी है।

पीछे में कुछ आदमी भी है।

एक लड़का ने जूता पहना हुआ है।

यह एक नदी का चित्र है नदी में बहुत सारे लोग हैं।

सामने में ब्लैक रंग का सोफा लगा हुआ है।

सामने में एक आदमी भी है।

सामने में एक बड़ा सा बिल्डिंग का चित्र है।

सामने में एक व्यक्ति एक चेयर पे बैठा हुआ है।

पीछे में कुछ लोग भी खड़े हैं।

पीछे मे कुछ टेबल कुर्सी लगा हुआ है।

यह एक बैंक ऑफ़ बड़ौदा का चित्र है।

सामने में दीवार पे एक सफेद रंग का कैमरा भी लगा हुआ है।

पीछे फ्रेम में फूल का फोटो भी टांगा हुआ है।

पीछे में गॉड भी हैं पीछे में एक बल्ब भी जल रहा हैं।

वे औरत ने माला भी पहना हुआ है।

सभी औरत ने रंग बिरंगी चूड़ियां भी पहनी हुई है।

पीछे में बहुत सारा बाइक भी खड़ा है।

सामने मे एक शटर का गेट भी लगा हुआ है।

खेत के आरी पर ईटा का टुकड़ा भी है।

सामने में कुछ तार भी गुजरा हुआ है ।

सामने में दुल्हा और दुल्हन बैठे हुए हैं।

सामने में कुछ लोग भी हैं।

पीछे में एक लोहे का गेट भी लगा हुआ है।

सामने में कुछ चेयर रखा हुआ है।

पीछे में एक चेयर पर सफेद रंग का कपड़ा भी ढका हुआ है।

यह एक मंदिर का चित्र है।

आमने में एक बड़ा सा मूर्ति और दो छोटे छोटे मूर्ति हैं।

आमने में पे कुछ लोहे का बेंच लगा हुआ है।

सामने में दो लड़का कुर्सी पे बैठा हुआ है।

पेड़ का रंग हरा है बिल्डिंग में हेलोजन भी लगा हुआ है।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

सामने कमरा में एक पंखा भी लगा हुआ है ।